उं उं जनता खड़ी हैं। एक लड़का खड़ा है। लाल कलर की शर्ट पहन रहा है।

एक दूसरे आ पास पास बैठी है बहुत सारी हैं।

एक उं लेडीज झाड़ू लगा रही है। झाड़ू से नहीं बगल में उं कुर्सियां कुर्सी रखी है। सामने मकान --

पुरानी हवेली दिखाई दे रही है। उसमें रेड कलर दिखाई दे रहा है।